लाइटें लगीं जे कुर्सी धरीं जे गिलास धरे जे पीले रंग के पर्दे ऐं लगीं।

जे दोए आदमी हैं जे कुर्सी हैं जे बाइक हैं।

जे निरे लोग लोग हैं। जे टीन पर ये मकान हैं।

जे लड़कीं बैठी हैं जे --

जे बड़ो स्कूल हैं जो मास्टर अ बच्चन को पढ़ाउत हैं।

मूर्ति धरीं हैं बुद्ध भगवान की --

मकान हैं जे खम्बा हैं गेट हैं जे मोटरसाइकिल हैं।

जे कपड़ा की दुकान हैं जे ब कोट हैं जे ब चुन्नी टंगी हैं। जे बनियान हैं।